और बहुत सारा घास भी दिखाई दे रहे हैं।

गाड़ी के ऊपर कंटेनर रखा हुआ है और ऊपर में करकट कसा हुआ है।

और गाड़ी का चका भी दिख रहा है और सामने लाइट भी लगाया हुआ है।

यह एक दवाई दुकान है दुकान में बहुत सारा दवाई रखा हुआ है।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

और बगल में गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लाइट भी लगाए गए हैं और एक गाड़ी है।

गाड़ी रेड कलर का है और बहुत सारे कुर्सी भी दिख रहे हैं।

पोस्टर भी लगाया गया है और दीवार में शुभ और लाभ लिखा हुआ है।

सामने पटाका दिखाई दे रहा है जो जल रहा है और बहुत सारे लोग भी है।

और सामने लोहे का गेट है और गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी ने माइक लिया हुआ है और बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

इसका बगल में एक घर है जो दरवाजा उसका लौक रहा है और खिड़की भी है।

और बहुत सारे लोग भी हैं जो अलग अलग ड्रेस पहने हुए हैं और ऊपर में करकट भी दिखाई दे रहा है।

और पीछे टावर भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारा कुंसी भी रखा हुआ है।

और गुब्बारा भी दिखाई दे रहा है और पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और बगल में टेबुल भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारे लोग भी हैं और दो गाड़ी लगाया गया है।

यह एक किलनिक है किलनिक में एक अदमिन कर लेटा कर दांत साफ किया जा रहा है।

इसका बगल में एक अदबिन बैठा हुआ है जो काला कलर का ड्रेस पहना हुआ है।